यहां पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए है ग्राउन्ड मे जो दिखाई दे रहे है यहां पर ये जाली लगी हुई है पेड़ लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे है कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रहे है एक खंभा गड़ा हुआ जिस पे लाइट लगी हुई है।